कुत्ते का शॉप है जहा पर कुत्ते से रिलेटेड आपको समान मिलता है चैन है जंजीर है पट्टा है।

पहाड़ी एरिया का नदी है नदी किनारे कुछ ही ना दिख रहा है पहाड़ वहाड़ भी दिखाई दे रहा है पानी है--

जिम की फोटो है जिम में जहां लोगों के एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं।

कैफे वगैरा है कोई जहां पे कुछ लोग अपना लैपटॉप लेकर के अपना काम वगैरा कर रहे है और कुछ नाश्ता वगैरा भी ऑर्डर किए हुए--

लैपटॉप का सर्विस सेंटर नज़र आ रहा है पोस्टर वगैरा लगा हुआ है इस कारण लग रहा है लैपटॉप का सर्विस सेंटर है डेस्कटॉप वगैरा सब का सर्विस सेंटर है।

यहा छोटे छोटे कक्ष बना दिये जाते है लाइब्रेरी में जाकर के लोग शांति से पढ़ सके बगेर डिस्टर्ब हुए।

बच्चे दौर रहे है मैदान में कोई रेस लग रहा है दौड़ की प्रतियोगिता है बच्चों की चार बच्चे दौर रहे है अपना--

हर जगह आपको हर घर के दो चार घर के आस पास कही छोटा मोटा मैदान होता है उस तरह का मैदान दिखाई दे रहा।

गांव के घरों में जो छोटा सा एक्सरसाइज करने का किसी ने बना रखा है कि भारी भारी भरकम सामान उठाकर के एक्सरसाइज करेगा।

मैदान कब्र से जहा पर हॉकी का मैच चल रहा है बहोत सारे खिलाडी खेल रहे है कुछ लोग बैठ कर के मैच का आनंद ले रहे है पुरे स्टेडियम वगेरा का--

बहुत बड़ा चिंद्ध बना हुआ दिखाई दे रहा है घास वास दिखाई दे रहा है खेत दिखाई दे रहा --

नाव है नाव के किनारे दो लोग खड़ा है पानी में बैठ कर के फोटो खींचा रहे है।

बनती है संगमरमर के मुर्तिया भी बनाती है चीनी मिटटी का सामान बनाती --

लोग खड़ा है बुजुर्ग लोग खड़ा है कुछ लोग बैठा हुआ है वेटिंग हॉल का दृश्य लग रहा है कुछ लोग सामान लेकर के खड़ा है।

खेत में पानी पट रहा है आजकल खेतों में पानी पटाने के लिए कुछ मशीनें लगे रहते है जो कि फुहारा छोड़ते रहते है पूरा दिन --

जिम है जिम में अपने कसरत करने के लिए लोग आता है तो वे जिम का है ट्रेडमेन जेसा दिख रहा है की--

जायेगा जिम में एक्सरसाइज वगेरा करेगा दोडेगा तो इसलिए लोग जाते है जिम में कसरत करने--

है लेकिन एक रिसेप्शन है बना हुआ है कुछ लोग दिख रहे हैं।

चोराहा है दो तीन मकान बने हुए है कुछ दो दुकान है कुछ लोग चोकी लगा कर के बेठा हुआ है ।

थोड़ा हाफ है जो दो तीन तरफसे दुकान दिखाई दे रहा है मकान दिखाई दे रहा है अब निचे निचे दुकान है ऊपर ऊपर मकान है तो अ--

मोटरसाइकिल को यहा पे रिपेयर कर रहा है गाव का है लग रहा है हवा ववा डाल रहा है चलरा वारा दुकान है छोटा--

एक पौधा भी लगा हुआ है तो कोई होटल का यह फ्रंट गेट है अब होटल है तो लोग रहेंगे ही ठहरेंगे ही रुकेंगे ही खाना वाना खाएंगे ही होटल है तो--

छात्रावास है छात्रावास झा पे बच्चे रहते है तो ये बनवाशी कल्याण आश्रम है।

और रखा हुआ है यहा पे तराजू वराजू भी रखा हुआ है तोल के देने वाला सामान है दुकान दार है खड़ा --

पहाड़ी एरिया का दृश्य लग रहा है की कोई टेंपू ओम्पू का स्टैंड है जहां से लोग आ करके गाड़ी वगैरा पकड़ेंगे तो टेंपू स्टैंड दिखाई दे रहा --

सजानेके काम में इसको लोग रख सकते है एक कलाकृति वगैरा बना कर के सीसे के घर में लोग रखते है ताकि लोगोंको देखने में अच्छा --

किताब के जैसे दुकान होते हैं वैसे किताब का दुकान ये नजर आ रहा है हम लोगों को किताब की दुकान--

ग्राहक से पूछ रहा है नाई की किस तरह क्या बाल की कटिंग करानी है वो उसके बारे में वो उसे जानकारी ले रहा--

खास कर के लोग लम्बी दुरीमें जाने के लिए ऐसी गाड़िया का यूज़ कर रहे है ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा आदमी ज्यासके छोटी बस --

फूल की दुकान है तरह तरह के फूल है माली वगेरा फूल बेचता है मंदिरों के आस पास --

फोटो है खास कर के शादी वगैरा में पहनी जाती हैं या किसी खास कार्यक्रम में लोग पुरुष लोग पहन--

पेड़ पोधे भी लगा कर के रखा हुआ है और किसी मल्टी नेशनल कंपनी का ये ऑफिस नज़र आ रहा--

मछली की दुकान है तरह तरह की मछलिया यहाँ पे मिल रहा है कुछ ग्राहक लोग खड़ा है मछवारा भी बैठा हुआ है मछली ले कर अपना मछली बेचने के लिए।

मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी लगा हुआ है अस्पताल के मुख्य द्वार पर ऐसा हर जगह आपको नजर आ जाएगा काले रंग की गेट --

सर्टिफिकेट वगैरा दीवाल पर टांग दिए गए हैं एक में मेडल भी लगा दिया गया है अलग अलग सर्टिफिकेट है जो--

का ढेर लगा हुआ है बालू का ईटा का गिट्टी भी दिखाई दे रहा है तो यहा से बालू वगेरा का काम --

यात्री सबको बुला बुला करके बैठाने के लिए तैयार है कि यात्री लोग आएगा तो लेकर के वो टाइगर रिजर्व में जाएगा।

वोट डालने का काम चल रहा है कुर्सियां लगी हुई है कुछ लोग लाइन में कतार में खड़े है कुछ लोग अपने वोटिंग डलवा रहे है कुछ लोग वोटिंग का काम कैसे हो रहा है वो देख रहे है।